छोटे छोटे डिजाइन बने हुए हैं लोहे के कुछ रखे हुए हैं उसमें --

सामने कुछ गाड़ी भी बाइक भी खड़ी है उधर तार भी बिजली के खंबे भी दिख रहे --

यह मार्बल रखा हुआ है पत्थर एक साइड में तीन लाइन में --

और कुछ हिरण के बच्चे भी दिखाई दे रहे कुछ बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं पेड़ के ऊपर कुछ--

कॉलम बना के मंदिर रखा हुआ है लोग कुछ लोग दर्शन कर रहे हैं मंदिरों का --

सफेद कलर का बीच में दीवार है मंदिरों के मंदिर का रंग पीले टाइप का कत्थई है।

बैगनी कलर का कवर चढ़ा के आगे टेबल पे भी सफेद और बैगनी कलर का डिजाइन है मेज पे आगे गूगल पे का स्कैनर रखा हुआ है।

यह रोड है रोड के उस साइड कुछ बड़े पेड़ दिख रहे हैं कुछ छोटे पेड़ ऊपर आसमान दिख रहा है।

ए टैम्पू भी दिख रहे हैं कुछ बाइक से जा रहे हैं कुछ --

बड़े बड़े मकान भी दिखाई दे रहे हैं। ऊपर बादल भी दिख रहे है। कुछ बड़े पेड़ है कुछ छोटे पेड़ है।

ढोलक वोलक भी रखे हैं आगे प्लस का साइन दिख रहा है एक लड़की भी दिख रही है बैठी हुई --

शीशे में पेड़ का भी तस्वीर दिख रहा है परछाई से नीचे कुछ लोग हैं।

आसमान मे पीले नारंगी करके शीशे का बना हुआ है सब कांच कांच--

यहां पे लोहे का सब अलग अलग डिजाइन का रखा हुआ है लंबा लंबा रॉड कुछ गोल रखे हुए हैं उधर कुछ सफेद रंग का दिख रहा है काउंटर ।

कुछ मेहरून पत्तियां दिख रही हैं कुछ हरे में डॉट डॉट दिख रहे हैं।

यहाँ पर तीन ठो लगा हुआ है बीच में मेज पर बीच में बड़ा अगला बगल सा है।

ये पत्थर का जमीन दिख रहा है कुछ बड़े बड़े वहाँ पे ईटे भी दिख रहे हैं उधर भी कुछ रखा हुआ दिखाई दे रहा है टब टाइप --

यहाँ पे कुछ ये दुकान है दुकान --

ये एक जिम जैसे जिम की कुछ मशीनें दिख रही है।

ऊपर अलग अलग ब्लॉक ब्लॉक बना हुआ है उसमें अलग अलग पंखे दिख रहे हैं।

यहाँ पे कुछ अ ये आगे रखा हुआ लंबा लंबा दिख रहा है लाइट टाइप की कुछ और भी डिब्बे में अलग अलग कुछ बड़े डिब्बे कुछ चौकोर कुछ --

और दिख रहा टायर टाइप का प्लक दिख रहा है।

दो कुर्सियाँ दिख रही है ए_सी लगा हुआ है बल्ब लगा है।

यह रंग का पता नहीं कुछ ऊपर दि मान मकान ये दिख रहा है कुछ लोग खड़े जा रहे हैं कुछ लोग चल रहे हैं।

यहां पे सामने आग जैसे जल रहा है बहोत भीड़ लगी हुई है कुछ लोग खड़े है।

और काफी लोगों के सामने बैगनी कलर का कुछ ऐसा --

यहां समुद्र टाइप का एक लोग किनारे दिख रहे है समुद्र के बी--

पेड़ दिख रहे हैं आसमान भी दिख रहा है।

भी छपे हुए हैं सामने कुछ रेट भी छपे हुए हैं।

यहां पर ये झरने का तस्वीर है एक झरना गिर रहा है ऊपर से और छोटे छोटे पत्तियां दिख रहे हैं पेड़ कुछ लोग इस पानी में--

पीले कलर के और काले रंग के उस पे बने हुए लाइनिंग लाइनिंग और गुलाबी बोरी या सफेद बोरी नीली बोरी सफेद --

गोल्डन कलर से स उम डेकोरेशन किया हुआ है सामने रिंग रिंग टाइप का बना हुआ है नीले और सफेद और --

काउंटर टाइप का भी बना हुआ डेक्स दिख रहा है जिसमें खींच के सामान रखा जाता है उधर --

कुछ लोग चल रहे हैं पेड़ भी हैं बड़े पेड़ छोटे पेड़ कुछ डिजाइन के पौधे कटे हुए हैं।